इसमें एक पोस्टर दिखाई दे रहा है इसमें किसी की तस्वीर लगी हुई है।

और दोनों पे बैनर लगे हुएं हैं और वो जहां पार्क में बैठे वहां घास दिखाई दे रही साइड में पेड़ पौधे दिखा रहे--

बहोत बड़ा दरबार है पब्लिक आती हुई इर्द गिर्द पब्लिक खड़ी है और जो रोड है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का--

और यहां पर रेक भी लगे हुए हैं समान भी दिखाई दे रहा है समान रंग बिरंगा है।

और ये किक किक उगी हुई हैं और और बीज बहुत सारे जमीन में हैं।

यहां पर लेडीज़ भी हैं जेंट्स भी हैं कोई खड़ा है कोई बैठा है कोई इधर जारा है कोई उधर जा रहा है।

समुद्र के अंदर तीन नव है। एक लाल कलर की एक व्हाइ--

कोई किसी चीज की बोतलें है वो रैक वो कम स्टोर के अंदर कोई ग्रील लाइन है कोई पीली है कोई लाल है ये दिखाई दे रही सभी पैकिंग बु--

घास का ग्राउंड बहुत बड़ा स्टेडियम दिखाई दे रहा है और बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।